एक कार लगा हुआ है ग्राउंड घेरा हुआ है ग्राउंड के बगल में पेड़ पौधा लगाया हुआ है।

झंडा भी टंगा हुआ है लाइट भी जल रहे हैं खिड़कियां दिखाई दे रहे हैं।

सामने दो खम्बा लगा हुआ है। उसमें भी फूल लगा हुआ है। सामने बैठने वाला रखा हुआ है।

खिड़कियां दिखाई दे रहे हैं जो शीशा दिखाई दे रहा है।

यह एक फील्ड दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग कराटा करने वाला ड्रेस पहने हुए हैं।

यह एक बहुत बड़ा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है जिसमें शीशा लगा हुआ है खिड़कियां में।

लोहे दिखाई दे रही हैं बिल्डिंग पीला कलर से पेंट किया गया है।

बगल में बाउंड्री दिखाई दे रहे हैं पेड़ पौधा भी दिखाई दे रहे हैं।

घास फूस भी दिखाई दे रहे हैं सामने रोड भी दिखाई दे रहा है घर भी दिखाई दे रहा है।

घर पीला कलर से पेंट किया गया है ग्रिल भी दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे पेड़ पौधा भी दिखाई दे रहे हैं।

स्विच भी लगा हुआ है। खिड़किया भी दिखाई दे रहे--